यहाँ एक स्पोर्ट का दुकान है रखा हुआ है।

दो लाइट लगाए है और सामने पीछे रेलिंग है बोट पर बैठे है लोग --

सामने एक बहुत सारी कुर्सी लाल रंग की रंगी हुई है ये अम्बेडकर जी का फोटो लगा है सामने --

बहोत खूबसूरत लग रहा है। पुल के ऊपर से बहोत अच्छा नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पुल भी बहोत अच्छा लग रहा है।

अब ये देखो हौंडा शाइन की भी एजेंसीया --

इसके ऊपर एक लाइट है फिर हरा रंग से रंगा हुआ है और --

पिंक भी रंगा हुआ है और लाल भी रंगा हुआ है और ऊपर भी रंगा हुआ है पीला भी रंगा हुआ है।

एक आदमी जो टी-शर्ट उसके पूरा कलर लगा हुआ है हाफ चड्डा पहना है।

उसके लिए चटाई भी लगा है। कुर्सी भी स्किन्स वाइट --

पीला रंग से है फिर एक पिंक है एक रेड है।

और ये देखिये एक बहुत अच्छा लग रहा है पिज़्ज़ा भी यहाँ पे मिलता है सीक कबाब भी हैं।

बाइक है एक बूढ़ा देखिये ऊपर खड़ा है और उसके ऊपर पिलर ऊलर उ साथ लगा हुआ है। उसके बगल में एक शटर है जो दुकान है ।

ये देखिये खम्भा है टावर के बगल में एक और ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो ब्लू रंग का रंगा है फिर उसके ऊपर देखिये टंकी है घर के सामने और --

टेबल है जो ग्रीन के है। एक और टेबल है जो ब्लैक से है। फूल देखिये कितना अच्छा-अच्छा रखा हुआ है ब्लैक हरा हरा सब है। उसके बगल में नीचे टाइल्स भी रखा हुआ है ।